और आसपास में हरियाली है हरियाली हरे रंग में है और यहाँ पर लाइन्स भी डाले हुए है।

इस चित्र मे बहुत सारी टोकरीया दिखाई दे रही है और जो जिसको दीवार पर रखा गया है।

और वहा एक बच्छी दिखाई दे रही है और ये पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

इस चित्र मे बहुत सारे फल दिखाई दे रहे है बहुर सारे और तीन आदमी दिखाई दे रहे है जिसमे से एक आदमी व्यापारी है और दो आदमी बॅग्स पेहने खडे है।

इस चित्र मे हम्म नदी है नदी मे नाव बेह रही है और नाव पे दो आदमी बैठे हुए है एक आदमी के हात मे डंडा है।

और उसके पीछे बहुत सारे हरे भरे पेड़ है और ये आदमी पत्थर पे बैठा हुआ है उसने जूते पहने रखे है।